इस चित्र में एक डांस क्लास का सीन है जिस पे आप लोग देख सकते हैं सब लोग एक्सरसाइज करने और एक ही पोज में सब लोग खड़े हुए हैं पीछे आप लोगों को दीवार दिख रहा है जिस पे डी एन डांस नेशन लिखा हुआ दिख रहा है उसे पे दो खिड़कियां लगी हुई है।

टेबल चेयर है जिसपे की बहोत सारे लोग भी बैठे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ आप लोग दे सकते हैं कि वहां पे खाना बनाने की रसोई है जिसमें कि वहां पे दो तीन लोग मिल के खाना बना रहे हैं और बीच में कुछ लोग सर्व भी कर रहे हैं।

फोटो में आप लोग देख सकते हैं सबसे आगे दो लोग खड़े हुए हैं जो की एक फाउंडेशन के लोग हैं क्योंकि पीछे आप लोग को एक पोस्टर दिख रहा है उसे पर लिखा हुआ है और आगे स्कूल के बच्चे बहोत सारे खड़े हैं क्योंकि ये एक उनका यूनिफॉर्म है और ये दोनों व्यक्ति उन लोगों को कुछ बांटना चाह रहे हैं।